जिसमें बहुत सारे हैंगर लगे हुए हैं।

इसके सारे खिड़की और दरवाजें नीले कलर से पुते हुए हैं।

और गायो के ऊपर पुरे में शेड लगा हुआ है।

इसमें बैट बॉल बच्चों के खिलौने --

जिसका नाम है स्त्री लक्ष्मी विवहा भवन।

सब हाथ में एक गुलाबी कलर से रैप किया हुआ गिफ्ट लिए हुए है।

जिसमे कि गोल आकार के बहोत सारे दरवाजे बने हुए है ।

विद्यार्थी कुर्सी और टेबल पर बैठे हुए है।

और शूज शर्ट लोअर बहुत सारा समान रखा हुआ हैं।

कैरेट के ऊपर मछलियाँ रही हुई हैं।

उसके बाजु में एक झाड़ू और एक डस्टबिन दिख रहा है।